मुझे इस चित्र में मैगी के पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे इस चित्र में कई पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं।